यहां पे आजू बाजू बहोत बिल्डिंगा और ये एक लेडिस हॉस्टल दिख रहा है।

यहां पे बहोत सारी एल_इ_डी लाइट चालू है और यहां पे बहोत बड़े बड़े--

यहां पे बहुत सारे लोग हैं टमटमा है टू व्हीलर है ऑटो वाले हैं।